दुकानदार दुकान में बैठे हुए ग्राहक सौदा ले रही हैऔर ऊपर टैक्सी जीबे रखी है ये अपनी गाड़ियों से जा रहे है अपनी लेडिसो को बिठा के जा रहे है सड़क भी हाईवे रोड निकला दिखाई दे रहा है।

यह एक मेरे को देखने में भी प्लेटफार्म लग रहा है प्लेटफार्म के सामने टैक्सी हमेशा रखी होती है बसें भी रखे रहती है तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है।